अ एक घर बना हुआ है जो सफ़ेद रंग का है।

ए एक चर्च है इस चर्च के बाहर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा है इस चर्च का रंग सफ़ेद है इस चर्च के पास में बहुत बड़ा पेड़ है यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा है बहुत बड़े-बड़े लोहे के गेट लगे हुए है इस गेट पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर कुछ लिखा हुआ है।

यहाँ पर दूर - दूर तक चट्टानें और बड़े - बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है बहुत सारी हरियाली छाई हुई है बहुत बड़े - बड़े चट्टान रखे हुए है।

इस वॉटर पार्क में बहोत सारा पानी भरा हुआ है एक स्विमिंग पूल है यहाँ पर यहाँ पर बहोत बड़ी - बड़ी बहोत बड़ा खम्भा लगा हुआ है लाइट ही लाइट जल रही है।

ये एक हाइवे है इस हाईवे पर एक बहोत बड़ा--

गेट लगा हुआ है उस गेट के अंदर बहुत सारे बड़े - बड़े पेड़ है बहुत सारी जीपे ट्रक {truck रख रखे हुये है यहाँ पर एक आदमी निकल रहा है यहाँ पर एक आदमी गाड़ी पर बैठ कर मा --}

मकान बन रहा है यहाँ पर बहोत सारी--

ईंटे गिट्टी रेवता और टंकी रखी हुई है यहाँ पर एक ट्राली ट्रैक्टर खड़े हुए है।

यह एक मस्जिद है इस मस्जिद पर एक बहोत बड़ा झंडा लगा हुआ है यहाँ पर--

साफ मैदान है यहाँ पर एक टंकी रखी हुई है यहाँ पर बहोत सारे जंगले खिड़की दरवाजे है यहाँ पर छोटे-छोटे पेड़-पौधे है।